इसमें एक तालाब सा है तालाब में मतलब सूखा पेड़ नजर आ रहा है ग्रीन काफी कलर नजर आ रहा हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बढ़िया है।

एच.डी.एफ.सी. बैंक है ये और बढ़िया है तीनों मतलब खड़े हैं बाहर आगे एक गेट है इनका गेट से ही मतलब अंदर एंट्री होगी एच.डी.एफ.सी. बैंक --

ये भैया ऑटो से कहीं जा रहे हैं। पीछे भी एक ऑटो है और मतलब आगे ऑटो पर एक खड़े हैं भैया और एक भैया बैठे हैं।

यहाँ पर देखो काफी मतलब सब लोग खड़े हुए हैं आधे लोग बैठे हैं आधे खड़े हैं कुछ भैया बता रहै हैं किताबे वगैरा बुक्स वगैरा रखी हुई है।

काफी बढ़ियाँ हैं। गाड़ियां भी पीछे लग रही हैं। कलर-कलर की गाड़ी हैं इसमें एक अंकल चल रहे हैं उनके हाथ में एक थैला है मतलब कही जा रहे हैं वो और ये बराबर में एक भईया खड़े हुए हैं।